बर सिंघो के बीच उनके एक छोटा सा बच्चा भी है सभी बर सिंघो को खाने के लिए दिया गया है।

यहां पर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

यहां पे बिजली के तार भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं।

यह दिन का समय है यहां पे दो लड़कियां लड़के से बात कर रही हैं।

यहां पे बिजली का तार खींचा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का तस्वीर है।

यहां पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस रूम में दो आदमी बैठे हुए हैं।

इस रूम की दीवारों का कलर व्हाइट है यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं।

यहां पे चारों तरफ से पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रहा है।

जहां पर तीन बेड लगी हुई हैं सभी बेड में गद्दा बिछाया हुआ है।

इस रूम की दीवाल का कलर व्हाइट है यहां पे लाइट भी लगी हुई है।

इसके ऊपर एक पुल है यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है।

जो साइकल में कुछ सामान लादे हुए हैं।

पौधों को गमले में रखा गया है और कुछ पौधों को गमले में टांगा गया है।

यह एक रेस्टोरेंट का तस्वीर है।

इस तस्वीर में बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है।

और दीवालो में फोटो फ्रेम टंगे हुए हैं।

जो एक फूल ऑरेंज है और एक पीले कलर का फूल है।

इस बोर्ड में इसका ब्लू कलर से गार्डन लाइव लिखा हुआ--